इसके घर में एक ऑरेंज है।

और एक फ्रिज भी रखा हुआ है।

और ये रोड के किनारे कुछ एक छे छोटा सा दुकान है|

जो सभी मिलकर एक रंगोली बना रही हैं।